कुछ गाड़ियां चल रही हैं और कुछ गाड़ियां साइड में खड़ी हैं।

और साइड में एक बड़ा सा खम्भा और है जिस पर औऱ कुछ तार लगी हुई हैं और दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा हैं गाड़ी आ रही है और साइड में कुछ ट्रक और खड़े हैं।

और पीछे की साइड में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं और सामने एक सफेद कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

उ नीचे कुछ पिलर खड़े हैं जो सफेद कलर के हैं और नीचे से बॉर्डर काले कलर का है।

और ये सामने कि तरफ एक फायर एक्टिंग्यूशर सिलेंडर लगा हुआ है और एक छोटी सी मशीन रखी हुई है।

इस टेबल के ऊपर एक थाली लगी हुई है जिसमें कुछ बिरयानी रखी हुई है और पीछे की साइड में एक गिलास रखा हुआ है।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है जिनमें से एक व्यक्ती ए_सी को ठीक कर रहा है और नीचे एक मग रखा हुआ है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है।

पीछे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स और दिखाई दे रही है और एक लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने की तरफ कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखाए गए हैं जिन पर ऊपर क्रॉस का निशान लगा है जो लाल कलर से है।

पीछे कुछ बेड रखे हुए हैं कुछ आलमारी बनी हुइ हैं और एक बड़ा सोफा रखा हुआ है और नीचे सफेद कलर की टाइल्स बिछी हुई हैं।

इस फोटो के अंदर एक हौड़ दिखाइ गई है जिसमें कुट्टी पड़ी है और इस पर एक गाय बंधी हुई है।

पीछे की तरफ एक छोटी सी गाय और बंधी हुई है जिसके अंदर एक सफेद रस्सी बंधी हुई है और उसके अंदर भी कुट्टी पड़ी हुई है।

और नीचे एक तखत दिखाई दे रहा है जिस पर हरे कलर की मैट भी बिछी हुई है।

सामने पंडित जी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हाथ में झाड़ू ले रखी है और कुर्ता पजामा पेहने हुए हैं।

सामने की तरफ एक कुर्सी पड़ी है जिस पर एक लड़का बैठा है और साइडों में दीवारों पे टीन लगी हुई है।

और एक खेत दिखाई दे रहा है जिसमे एक खड़ी है और छोटे से धान खड़े है।

दुकान के अंदर लाइटें लगी हुई है और सामने की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और साइड में बाउंड्री है जिसमें कुछ घास खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और सामने की तरफ कुछ तख्ते लगे हुए हैं और कुछ लगी हुई है लकड़ी की।

फोटो के अंदर एक जिम का चित्र दिखाया गया जिसमें सामने की तरफ कुछ व्यक्ति दिखाया गए हैं और नीचे एक मैट बिछी हुई जो लक लाल और काले कलर के लाइनो से बनी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर कुछ गोल्डन कलर का कलर है और नीचे पहिए बने हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक कपड़ों का शोरूम दिखाया गया है जिसमें सामने की तरफ कुछ अलमारी और कुछ रैक बनी हुई हैं।

फोटो के अंदर सामने की तरफ कुछ कुर्सी पड़ी है जिन पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं तो कुछ महिलाएं व ख बैठी हुई हैं।

एक महिला माइक में बोल रही है और पीछे कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई है।

और इन रैकों में सिलाई मशीन रखी हुई हैं और नीचे एक टेबल है जिसके ऊपर लोहे की भी एक मशीन और रखी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ लोहे की रैक बनी हुई है और कुछ लकड़ी की रैक है जिनमें कुछ बाक्सेस खाली डब्बे रखे हो जो सफेद कलर के हैं।

उस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लीडरशिप माइंड बियोंड लिखा हुआ है।